जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी बड़ी--

जैसा की आप देख सकते हैं की एक मंदिर है।

जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक सीमेंट से भरा भरा हुआ बोड़ा रखा हुआ है।

जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे बहुत सारे लोग हैं जिसमें कुछ लड़के लड़कियां और बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

चोर्च दिख रहा है जहां बहोत भीड़ लगी हुई है।

बाजू में सरारा और एक आदमी बैठा हुआ है जो अपने मोबाइल को देख रहा है और बहोत सारे कपड़े रखे हुए है।